जिसका छत छप्पर का है अतः यहां बहुत सारे आदमी और औरत भी है।

यह एक टमाटर का दृश्य है जहां पे बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं।

अ टमाटर का बीच में होल है व्हाइट कलर का--

तथा पहाड़ के ऊपर बहोत सारे आदमीन खड़े हैं।

एक आदमीन ब्लैक कलर का स्वेटर पहने खड़ा है।

एक आदमी ब्लू कलर का स्वेटर पहने खड़ा है।

यहां पे दो बोर्ड व्हाइट कलर का लगा हुआ है।

यहां बच्चे रेड कलर का जैकेट पहन के खड़े हैं।

और यहां पर बहुत सारे आदमी भी दिख रहे है और एक बाइक भी दिख रहा है और एक लाइट भी दिख रहा--

और बहुत सारे तार भी लगे हुए है यहां पे एक ब्लैक कलर का कार भी लगा हुआ हैं।

और यहां पे लो सीढी बनाया हुआ है।

जहां पर बहुत सारे प्लास्टिक में फूल लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे कचड़े भी हैं अतह यहां पे एक लकड़ी भी दिख रहा है।

यह एक ऑफिस का दृश्य है यहां पे बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं ब्लैक कलर का।

बैलून में बहुत सारे हैं व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज --

और यहां पर दो तीन ए_सी भी लगे हुए हैं।

जो कि ग्रीन और वाइट और लाल कलर का है ।

इसके ऊपर कुछ समाने भी रखे हुए हैं।

तथा यहां पे बहुत स सारा फूल भी दिख रहा है यहां पे बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रहा है।

अतः यहां बहोत सारे फूल भी है लाल और ग्रीन कलर का।

अतः उसके ऊपर एक वाइट कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक आर वन फाइव लाल कलर का है और एक जी_टी है और एक यमहा है।

तथा यहां बहोत सारे बेंच और टेबल लगे हुए हैं।

यहां पर डंबल मशीन और रनिंग मशीन भी है।

यहां पे एक लाल कलर बैनर पे डी_एस_पी धो सो धोसा लिखा हुआ है।

यहां पे कैफे शॉप भी लिखा हुआ है अतः दो कुर्सी भी लगा--

यह एक हवाई अड्डा का दृश्य है जहां पे एक पीला कलर का स्वेटर पहने एक बच्ची खड़ी हुई है।

और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी है अतः यहां पे बहोत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं।

और एक बच्चा ग्रीन कलर का शर्ट पहने ब्लू कलर का जींस पहने खड़ा है।